जो फोटो यख खिचवाणा वैका पैथर एक छोटी नाव च दिख्येण लगीं जैफर एक मनश्यलु खड़ु च हुंयु जैका हाथा एक लाठु भी छा पतनी हमथे एक पिट्ठू भी च दिख्येण लग्युं जेका ओर-पोर हमथे कुछ ढुंगा छन दिखेण लग्यां।

ये चित्र मा हमते एक बड़ी जगह च दिखेण लगीं जमणी हमते भैर फणी कुछ दूकान च दिखेण लगीं रूम का ही अगाड़ी बिटि हमते कुछ बाइक अर कुछ साइकिल च दिखेण लगीं।

यफणा हमते कुछ लोग भी छन दिखेण लग्याँ अर हमते एक बड़ु खंभा च दिखेण लग्युं जैका ओर पोर तार छन लगीं पार फणा हमते और भी इमारत दिखेण लगीं।

पार हम तैं कुछ डाला छन दिखेण लग्यां और एक बड़ी इमारत भी दिखेण लगीं जै का निशान पर कुछ डाला कुछ डाला कुछ झाड़ी दिखी छिन।

यू फूल बेचंण छन लग्याँ ऊँका पैथर एक टेंट भी च लग्युँ अगाड़ी बिटी सै लगीं जैकु रंग लाल छ।

जै जरा हमते बड़ी दुकान दिखेण लगीं जमणा हमथे द्वि तीन नौन्याल अर एक बैरवान दिखेण लगीं बैरवान का हाथम एक कप चै वू चाय छै पीणी भितर फणि हमते अलमारी छन दिखेण लगीं जू फर भौत सारी --

किताबी छान रखीं दिखेण से यु एक किताब वाला की दुकान छा लगणी।

पैथर हमते बडु सीसा एक पर्दा भी दिखेण लग्युं दिखेण से भी यो एक जीम लगणु।